आंध्र बैंक के ए.टी.एम. ए.टी.एम. एक्सिस बैंक ए.टी.एम. यहां पर ये इंटरनेट गोल्ड मणप्पुरम गोल्ड लोन यहां पर गोल्ड लोन यहां पर बाहर बाई --

और यहाँ पे बलूंस लगे हुए हैं यहाँ गेट गेट के बाहर खड़ा हो --

एचडी‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌एफसी बैंक एचडीएफसी बैंक कका ए.टी.एम वन एट सिक्स जीरो टू सिक्स एट फाइव जीरो एट फाइव जीरो यहाँ पर दो आदमी खड़े हुए है कुछ आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रखा है ।

काफी बहोत सारी भीड़ खड़ी है यहाँ पर ईसाई लोग चर्च मे आते है और यहाँ गॉड को मानते है।

यहाँ पर काफी सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं।

यहाँ पर एक अंकल स्वेटर पेहने खड़े है कुछ लोग पैसे निकाल रहे है ए.टी.एम. से।